यह एक बाल काटने वाली दुकान है और वो एक जन के बाल कट रहा है और सोफ़ा लगा हुआ है।

और एक जन मफ़लर लगाए हुए है और डॉक्टर के गले में स्टेटोस्कोप है और डॉक्टर के --

यहाँ पर बहोत सारे लोग हैं जिम में और अंदर जिम का समान रखा हुआ है और दो लोग अपनी फोटो खीच रहे हैं और शीशा भी लगा हुआ है ।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है और यहाँ पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं।